इसमें दो एसिया तीन एसिया लगी हुई हैं ऊपर साइड छत है और नीची साइड टाइल्स लगा हुआ किनारे साइड दीवार में काफी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है।

यहाँ पे काफी सारे बेंच है और खुर्शिया है बगल में काफी सारे खिड़कियां भी है जिसके अंदर कांच भी लगा हुआ--

यहाँ पे काफी सारे पे-- गुब्बारे लगे हुए हैंअगल बगल काफी सारे के परदे हैं सामने साइड एक इंसान हैं जो प्लस के आइकन में मरा हुआ लटक रहा हैं।

एक मकान है जो काफी बड़े है म ऊपर शायद बिजली के तार भी फेले हुए है।

और नीचे साइड तीन बाइक खड़ी हुई हैं अंदर एक जाने के लिए एक रास्ता है जिसके लोहे की दरवाजा लगा हुआ है ऊपर साइड एक बल्ब है और काफी दिन का माहौल है।

यहाँ पे काफी सारे पेड़ पौधे हैं जो हरे भरे हैं एक बिजली का खंबा है।